ये लोग शायद पानी से पौधों को पानी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है।

ये एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है जिसमें बीच में एक बास्केट लगी हुई है।

यहां पे चलने के लिए भी वॉकिंग जैसा बनाया हुआ है।